ब्लैक कलर की पीछे चार पांच तस्वीरे हैं।

एक लड़का वीडियो बना रहा है जिसकी परछाई दिख रही है। एक ग्राउंड है बहोत ही बड़ा और कुछ पेड़ हैं जिनके ऊपर हरील हरे कलर की ल-लड़ी जल रही है।

टेबल को सजाने के लिए माल है दो।

ये ऊपर एक वॉटरपूल है ये पानी आ रहा है अभी।

पत्थरो से बीच में आ रहा है बहोत बड़े बड़े पत्थर है।

जो एक वैन है वैन के पीछे एक दुकान है येलो कलर का।

पीछे एक घर दिख रहा है येलो कलर की साइड हो रही है।

और सामी घर के सामी ईंट के बाउंड्री हो रही है ये बहुत बड़ा ग्राउंड है।

दीवार रेड कलर की है दीवार के सामी हरे घास है।

यहां पर कुछ सोफे रखे हैं जिनका कलर चॉकलेटी है कुछ चेयर रखी है सफेद कलर की और कुछ गद्दे हैं।

बड़े बड़े घास हैं पीछे दो आदमी खड़े हुए बात कर रहे हैं।

पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग है कुछ गमले रखे हुए हैं।

सामने एक डिब्बे का बॉक्स है और एक जीना है एक ग्रिल लगी हुई है।

टेबल पे डिजाइन के लिए गोली से बने हुए हैं पीछे--

यहां पर एक कमरा है दो कमरे हैं दोनों के गेट का कलर ब्लू है।

यह लोहा है एक जंगला है बाहर कुछ कट्टा रखा है।